इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है और एक जगह तालाब दिखाई दे रहा है और हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है और हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे है सफ़ेद रंग का मकान दिखाई दे रहा है और मैदान दिखाई दे रहा है और कुछ पर्दे लटके हुए दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है पहाड़ दिखाई दे रहा है एक रास्ता दिखाई दे रहा है और हरियाली दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में कुछ रंगबिरंगे फूल दिखाई दे रहे है और--

हरा कार्पेट दिखाई दे रहा है और चार सुकून दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे एक चार पहिया वाहन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो की पूरा खुला हुआ दिखाई दे रहा है उसमे बॉनेट भी नहीं दिखाई दे रहा है।